यहां पर बोहोत सारी गाड़ियां रखी हुई हैं। यहां पर हरे कलर से एक मैट --

यहाँ पर पिंक कलर से एक है घर बना हुआ है और यहाँ --

रेलिंग भी लगी हुई है यहाँ पर एक झंडा भी लगा हुआ हैं।

यहां पर एक ब्रेंच रखी हुई है जोकि हरी और ऑरेंज कलर से और ब्लैक कलर से --

ब्लैक कलर से डिजाइन बने हुए है यहाँ पर।

बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है और नीचे घास भी लगी हुई है। यहां पर और भी ब्रेंच है।

यहां पर बुक बुकों की दुकान खुली हुई है जहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने --

पास में एक रेड कलर से चेयर डली हुई है यहाँ पर।

बाहर लो लोहे का पाइप लगा हुआ है। जिस पर बैनर लगे हुए हैं।

और एक बाइक पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पीछे भी एक --

यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो कि व्हाइट कलर से मंदिर के अंदर छोटी-सी मढ़िया बनी हुई है।

एक चबूतरे पर नारियल रखे हुए हैं। यहाँ पर लोहे की ब्रेंच बेंच भी लगी हुई है।

यहाँ पर लोहे की पाइप लगी हुई --

बल्ब लगा हुआ है। पीछे नीले कलर से पर्दा लगा हुआ है और एक मुकुट रखा हुआ है।

लाइट के खंबे लगे हुए हैं। पास में एक छोटा सा घर और बना हुआ जोकि व्हाइट कलर से है और यहाँ पर --

बाउंड्री बनी हुई है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि लोहे से है। यहाँ पर --

ब्लैक कलर से चेनल लगी हुई है औ स्लेटी कलर से शटर लगे हुए है।

बोर्ड लगा हुआ है जोकि नीले कलर से है। उस पर नाम लिखा हुआ है।

एक गली गई हुई है जोकि अंदर की साइड जा रही है।

यहां पर एक जिम बनी हुई है। जिम में जिम मशीने रखी हुई है यहां पर और लोहे की और मशीने भी रखी हुई है। यहां पर एक पटिया --

कुछ कंप्यूटर भी रखे हुए हैं और यहाँ पर एक ब्लैक कलर से चेयर रखी हुई है।

यहाँ पर गेट फूलों से सजाया गया है और एक महिला का बैनर बना हुआ है और छत बनी हुई है जोकि व्हाइट कलर से ग्रीन कलर से हैं।

यहाँ पर पानी का फव्वारा बना हुआ है जिसमें नीले कलर से लाइटें में लगी हुई हैं और बहोत सारा पानी गिर रहा है।

यहाँ पर बहुत सारी सटरे बनी हुई हैं।

स्लेटी कलर से टाइल्स लगे हुए हैं।